ये एक इलेक्ट्रोनिक शॉप है यहाँ पर काफी चीज़े --

ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में ये हॉस्पिटल को --

यहाँ पर भी कुछ कल्चर और प्रोग्राम की तैयारी चल रही है।